और लोग बाहर बैठे।

यह लाइब्रेरी है वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हैं लाइब्रेरी में एक काउंटर काउंटर है।

हरी मिर्ची बीट ककड़ी गाजर कंध बैगन शिमला मिर्ची.

और अ टेबल अह ऐसी लकड़ी की कुर्सी लगाई है सोफे जैसी।

कुछ है दो लडकियाँ उधर बेड पे बैठ --